इसके आस-पास बहोत सारे पेड़-पोधे है सामने बहोत बड़ा सा नदी है इसके आस-पास बहोत घने-घने पेड़ है।

और यहाँ नदी में बीचो-बीच बान लगाया गया है इसके आस-पास बहोत सारे पेड़-पोधे हैं यहाँ बहोत भीड़ है।

यह एक गाँव में एकलौता कोचिंग है जहाँ पे बहुत मान्यता है यहाँ के सर बहुत ही अच्छे है।

डोर पे यहां पे मूर्तियां रखी गई है उसका गेट पर फूलों से सजाया गया है ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया है राइट साइड पिंक कलर का और लाइट ग्रीन कलर में टेंट लगाया गया है और सामने एक बाइक भी खड़ी है।

यह एक गाँव में कोचिंग सेंटर है जिसका नाम विद्या कोचिंग सेंटर है और यह कोचिंग सेंटर बहुत ही छोटा सा है लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चे आते है।

यहाँ पे से खुला आसमान का व्यू दिख रहा है आइट साइड छोटी-छोटी बिल्डिंग भी है लेकिन बहुत सारी बसेस हैं जो की वाईट कलर की है और एक टेम्पो है जो की ब्लेक कलर का है।

यहां एक गांव मे छोटी सी शॉप है जहां पे लजीज लिखा हुआ है जिसमें साइड मे इसके बहोत सारी सीढ़ियां है नीचे नोबल की बैनर लगा हुआ है एक बाइक खड़ी है।

यहाँ पे बहुत सारे भी वर्किंग चल रही है जिस में यहाँ पे लगे हुए है और नीचे यहां पे एक कूलर का भी सिस्टम दिया हुआ है।

यहाँ पे चैनल गैट लगा हुआ है और एक बहुत प्यारा सा विंडो भी है उसके आगे भी यहाँ पे प --

एक गेरेज है यहां पर डीलर्स लोग आते है और यहां पे तीन टेम्पू खड़ा है उसके आगे तीनो के आगे एक शटर लगी हुई है और जो बिल्डिंगे आस-पास --